ओर वह स्वस्त रहतें हैं |

ऑटो गाड़ियाँ खड़ी रहती है। लोग इसे भाड़ा कर के यहाँ वहाँ जाते है। ये छोटी कम दूरी जाने के लिए बहुत अच्छी होती हैं । इसमें एक साथ आठ दस आदमी सफर कर सकते हैं ।

यहाँ पे एक पहाड़ दिखाया गया है और नीचे एक रोड गई हुई है और बगल में खाली मैदान दिखाए गए है मैदान में बहुत छोटे छोटे पेड़ पौधे है पहाड़ पे भी बहुत छोटे-छोटे पेड़ पौधे है झाड़ियाँ है और पहाड़ यहाँ काफ़ी हरा भरा दिख रहा है और यह दिखने में बहुत ही सुन्दर लग रहा है ।

औरत दोनों का इलाज़ किया जाता है यहाँ पे जेंट्स के लिए अलग डॉक्टर और लड़कियों के लिए अलग डॉक्टर है।

टोटो गाड़ी बहुत अच्छी होती है वह बिना पेट्रोल डीजल के चलती है वह बैटरी से चलती है जिससे प्रदुषण नहीं होता।